बहुत सारी कारें खड़ी हुई है यहाँ पे फुटपाथ दिखाई पड़ रहा है फुटपाथ के साइड में ग्रीन कलर का घास जैसा लगा हुआ है।

साइड में रेलिंग वाइट कलर की दिखाई पड़ रही है वहां पर गमले रखे हुए है अंदर एक दरवाजा जैसा बना हुआ है ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ है सामने एक शैडो दिखाई पड़ रही है साइड में कुछ पेड़ दिख रहे है जो ग्रीन कलर में दिख रहे है वहां नीचे --

दिखाई पड़ रहा है वहां पे कुछ लोग चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं यहां पे एक नाली दिख रही है यहां पे साइड में घास उगी हुई दिखाई पड़ रही है एक तार जाते हुए दिखाई पड़ रहा है।